यह एक बड़ा कॉलेज है जिसमें ऊपर नीचे रूम बने हुए हैं।

कुछ बोरिया रेडे पर है जो वाइट कलर की है।

जिसमें कुछ मजदूर बोरियो को उतार रहे हैं।

सूखी घास है जिसमें कुछ हिरण और हिरण के बच्चे हैं।

ऊपर छत पे वाइट कलर का पेंट हुआ है।

यह कुछ पत्तियां है जो हरे कलर की है।

यह एक स्टोर है जिसमे बहुत सा सामान रखा हुआ है।

जिसमें रेड कलर का कलर हुआ है और एक पर ब्लू कलर का कलर हुआ है।

कुछ बत्तखें उड़ रही है कुछ पानी के अंदर हैं।

यह एक शौप है शौप के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपर ग्रीन कलर का पेंट और वाइट कलर का पेंट हुआ है।

शॉप के अंदर एक स्कूटी है और तीन आदमी खड़े हुए हैं।

और छतो व दीवारो पर व्हाइट कलर का पेंट हुआ है।

कुछ जेन्स बाइक पर है कुछ पैदल है एक आइसक्रीम वाला है।

यह एक परचून की शॉप है।

यह एक जिम की तस्वीर है जिसमें कुछ लड़के जिम करने आए हुए हैं।

यह एक ढ़ाबा है जिसमें एक छोटी सी दुकान है। दुकान है।

इस तस्वीर में कुछ लड़के क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

जिस शॉप के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

शॉप पर एक कांच का गेट है गेट के बाहर रेलिंगे लगी हुई है।

जिसमें एक टोकरी है टोकरी के अंदर गेंदों के फूलों की माला बनी हुई है।

जिसमें बच्चे लंच कर रहे हैं मेजो पर टिफिन वै पानी की बोतले रखी हुई है।

कुछ डब्बे रेड कलर के है और कुछ व्हाइट कलर के डब्बे हैं जिन पर उनके नाम लिखे हुए हैं।